यह किसी बीच का द्री चित्र है जंहा पे अगल-बगल पे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है और यंहा पे सामने ही एक बहुत बड़ा मेदान दिखाई दे रहा है।

जिसके छोर पर एक पहाड़ की तरह नजर आ रहा है एवं बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे है।